की देखिए मछुआरों को प्राप्त हुइ है और देखिए इसको ठेले पर लाद कर दिया जा रहा है। ये --

यहाँ पे चर्च के सामने बहुत सारी बच्चियां और बच्चे खड़े हैं और देखिए नर्स भी खड़ी है और वर्कर भी खड़े हैं।

यहा जो झींगा मछली को अपने हाथ के द्वारा उसको इकट्ठा कर रही है जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है एक पुरुष है जो मछली की ओर झुके हुए हैं।

जोकि हाथ में मोबाइल लिए ऊँगली दो दिखा रही है एक बाइक लिए हुए सामने कैफ़े की ओर दिख रहा है और ये कैफ़े न्यू जैसी-- --

यह झील जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए महिला हाथ में अपनी चप्पल ली हुई है और ये पानी के अंदर--